बगल में एक सौर ऊर्जा का प्लेट है।

बगल में एक और मंदिर है जो की सफ़ेद कलर की है।

यहाँ बहुत सारे नर्स है।

इसमें एक ट्यूब लाइट है जो की पीले कलर ट्यूब लाइट की है।

जैसे केले हैं बहुत सारी सब्जियाँ भी हैं।

यह एक डैम है जो की बहुत ही पुराना डैम है।

और गार्डन की तरह देखने में लग रहे हैं।

ये चर्च बहुत ही बड़ा है।

यहाँ बहुत सारे लोग भी हैं बगल में दो-तीन और दुकान भी है।

और यह इसमें ढलाई भी हो रही है।

और यह जो फील्ड है यह बहुत ही बड़ा फील्ड है।

जो की हरे कलर की है।

उसके पार्ट पुर्जे भी मिलते हैं।

यहाँ बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ भी है।

इसमें शीशे भी लगी है जो कि पूरे बिल्डिंग में शीशे लगी है।

इसके ऊपर चढ़ने के लिए है।

बहुत ही बड़ा मूर्ति है यह जो की एक आदमी है जो कि इस घोड़े पर बैठे हुए हैं।

पीछे बिल्डिंग बनी है जो की सफ़ेद कलर की है।

यह एक बस स्टैंड है। यहाँ बहुत सारे गाड़ी लगी हुई है।

जैसे बिस्कुट मैगी चावल आटें --